एगो दुकान बा ऊ दुकान कॉपी के दुकान बा।

जब बारिश होता तो मोरवा फ़ैल जाता अपने आप बादल में और बो मोरवा के पंख ब बड़ा सुंदर तो लगबे करले --

ऊ रोड पर काचा रोड बा मने ईटा के रोड बा उह रोड पर दो तीन अदिमी सुबह शाम टहल ले ।

बड़ा सा मई अ नदी बटे |